एक लड़की दुपट्टा पहने खड़ी है।

वो मशीन मैं कुछ कर रहे--

यहां पे फंक्शन हो रहा--

दो ने ब्लैक कलर की टी_शर्ट पहनी है एक ने ग्रीन कलर ।

बाहर एक व्हाईट कार खड़ी है और एक एक्टिवा खड़ी हुई है।

नीचे टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

रोड पे झंडे लगे हुए हैं।

ढाबे के बाहर ग्रे कलर की कार खड़ी है।

हॉल के पीछे लिखा है बी_डी_डब्ल्यू वर्ल्ड स्कूल ।

तिरंगे बलूंस लगाए हुए हैं वहीं कारें ख--

हॉल में एक पिचर नन खड़ी है।

इमारात पे लिखा है नेशनल पॉइंट कार केयर शॉप ।

उसके सामने गार्डन बना हुआ है।

जंगल में बड़े बड़े पेड़ है।

दो शेर बैठे हुए है शेरों के नीचे बड़ा सा पाइप रखा हुआ है।

बलून से सजाया गया है वहीं पे दो लोग खड़े हुए हैं एक ने ब्लू शर्ट एक ने --

वहीं पे पास में अंडों की ट्रे रखी हुई है।

पूरा जिम रेड और ब्लैक कलर से बना हुआ है।

कुछ दुकाने नीचे हैं कुछ दुकाने ऊपर हैं।

यहां पे एक केबिन दिखाई दे रहा है।